यह जगह भी बहुत अच्छा है| सामने वहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है सीढ़ी पे पाँच-सात महिला खड़ी है जोकि एक महिला वाईट रंग की साड़ी पेहन कर खड़ी है ।

साथ में इधर पीपल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो कि नीचे तक है देखन देखने में बहोत अ --

और पौधे दो गेट भी है इस तरफ और बीच में बड़ा गेट है देखने में फूल भी लगाया हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लगता है।

ये जगह भी बहुत अच्छा लगता है देखने में| साथ में ऊपर टे टेबल लगा हुआ है।

खड़े है एक आदमी मोटरसाइकिल पे है। और सामने महिला भी अंदर जा रही है। साथ मे ए_टी_एम घर भी है। और गेट लगा हुआ है।-

इधर ए ए सैलून बहोत अच्छा हेय और दो आदमी बाहर हेय एक आदमी अंदर खड़ा हुआ हेय तो एक आदमी बैठा हुआ हेय बाहर मे कुर्सी हेय।

दो लड़के बहुत अच्छा लगता है देखने में साथ में नाव भी है नाव के अंदर एक बाँस भी दिखाई दे रहा है पानी में खड़े है दोनों लड़के पानी के अंदर नाव है।

नदी भी बहुत अच्छा अंदर एक रस्सी से नाव को बांधा हुआ है बहुत से आदमी इस नाव पे खड़े--|

एक आदमी बैठे हुए है देखने मे बहुत अच्छा लगता है सामने एक झील भी दिखाई दे रहा है जब कि वो बहुत पीछे है।

ये इंजीनियर फीता लगा कर फीता भी रखा हुआ है और जैकेट भी पहना हुआ है और हेलमेट भी है चश्मा भी है साथ मे एक रॉड भी रखा हुआ है पीछे।